और हिरन नीचे चर रहे हैं सामने से बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी हैं ।

बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे हैं| यह खेत है| इस खेत में पानी लगाया जा रहा है यानी की पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इसके बगल में।

यह कपड़ों का एक शोरूम है और शोरूम में बोहोत सुंदर-सुंदर टी शर्ट है।

और इसमें शर्ट भी है फोल्ड करके रखी गई है जो की काफी सुंदर दिख रही है।

ये एक कंकाल है। मनुष्य का पूरे शरीर का कंकाल है।

ये एक फोटो स्टूडियो है। सामने फोटो लगी हुई है।

और अगल-बगल बोहोत दुकानें भी हैं और घर भी है और लोग आ जा रहे हैं।

और इसके आसपास कुछ नहीं है सुनसान है।

यह एक खेत है। खेत के सामने एक घर भी बना है।

खेत हरा भरा है और खेत के पीछे एक दीवाल है जहां पे बहोत बड़े पेड़ भी हैं।

यह एक होटल लग रहा है जहां पे भोजनालय लिखा होता है काफी टेबल लगी हुई है और कुर्सियां भी लगी हुई हैं ।

सामने एक समुन्दर है और समुन्दर में तीन चार नावे हैं | समुन्दर बहोत बड़ा है।

आके पानी के अन्दर जाके पूजा करते हैं ।

छठ पूजा हो रही है। छठ पूजा में औरतें पानी के अंदर खड़े होकर पूजा कर रही हैं। बहोत सारी औरतें टोकरियां भी लेके भी आई हैं।